जो कि एक नयी बस रोड पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

सामने एक बैंक दिखाई दे रहा है।